यहां एक बड़ा सा हाल है जहां पर बहोत सी टेबल्स खुर्सी रखी हुई है।

नीचे जमीन सिल्वर कलर की है यहां पर वॉल में कोई सिल्वर कलर है कोई ग्रीन है कोई ऑरेंज कलर है।

दो ब्लैक कलर की वायर है एक फ्रिज है जिसमें लोकंठ सिल्वर कलर का है।